एक व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है कार के सामने सी_जी पंद्रह सी_एफ उन्नीस सो बानबे लिखा दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है सामने मिट्टी दिखाई दे रही है।

--मोटरसाइकिल पर बहुत सारे आदमी जाते हुए दिखाई दे रहा है एक लड़का स्कूटी पर दिखाई दे रहा है बगल में वाइट कलर का डम्पर दिखाई दे रहा है कुछ दूरी पर पेड़ दिखाई और --